यहां पे एक फ्यूल फिलिंग मशीन भी लगा हुआ है।

यहां पे एक सोफा टेबल और कुर्सी रखा हुआ है।

यहां पे एक पानी का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

आगे कुछ मकान भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गमलों में पौधे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

रास्ते के ऊपर कुछ गाड़ियां भी चल रही जैसे बाइक ऑटो-रिक्शा । बगल में कुछ बिल्डिंगें भी बने हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे लोग एक साथ बैठकर पूजा करते हुए दिख रहे हैं।